ये दो लाइट भी जलते हुए दिखाई दे रहा हैं।

हॉल के अंदर में बहुत सारा बेंच दिखाई दे रहा है।

घर में बहुत सारा खिड़की में दिखाई दे रहा है।

में दो स्कूटी दिखाई दे रहा है।

रूम का अंदर में बहुत सारा टेबल है।

दो ठो किनार में दो टैंट दिखाई दे रहा है।

घर के पीछे में बहुत सारा बादल भी दिखाई दे रहा है।

घर में बहुत सारे हैंगर भी दिखाई दे रहा है।

फिर एक घड़ी है और बहोत सारा बाती भी दिखाई दे रहा है।

एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

उस तरफ फ्लावर भी दिखाई दे रहा है।

बादल भी दिखाई दे रहा है।

साइड में शीशा भी दिखाई दे रहा है।

ऊपर में दो फैन दिखाई दे रहा है।

नीचे में एक गेट भी दिखाई दे रहा है।

ये ट्रेन का साइड बहोत सारा आदमी भी है।

उपर में एक ओवर ब्रिज भी दिखाई दे रहा है।

रेस्टोरेंट के अंदर में बहुत सारा आदमी दिखाई दे रहा है।

ऊपर में एक बालकनी भी दिखाई दे रहा है।

साइड में एक विंडो भी दिखाई दे रहा है।

पीछे बहुत सारा घर भी दिखाई दे रहा है।

एक रूम दिखाई दे रहा है।

रूम में एक टेबल दिखाई दे रहा है।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

यहां पे एक फील्ड दिखाई दे रहा है।

फिल्ड मे जाली का वाल दिखाई दे रहा है।